ये का समय है ऐसा मुझे एसा अस ई पिक्चर से लग रहा है जो की बहोत ही अच्छा लग रहे है मुझे।

और इसकी जो डिजाइनिंग है अंदर कि ये मुझे बहोत अच्छी लग रही है।

औ उन्ही के साथ साथ मुझे एक घर भी दिखाई दे रहा है जो की बहोत ही प्यारा और सुंदर सा दिख रहा है।

एक टेबल में तीन तीन प्लेट रखे हैं।

ए अपनी एडमिशन कराने के लिए शायद--

यहां पे मुझे बहोत सारे टेबल्स वगैरा भी दिखाई दे रहे हैं यानी कुर्सी वगैरा--

जिस तरह मैं इस लेडी को देख रही हूं ये मुझे बहोत ही अच्छी भी लग रहीं हैं है ना--

ये जो जिम में होती है जो कि जॉगिंग के लिए होती है लोगों को टाइम नहीं मिल पाता सवेरे मॉर्निंग वॉक करने के लिए।

ऐसा कहें तो जल्दी मतलब कवर हो जाती है हमारी बॉडी अच्छी हो जाती है।

तो यह जिनके मुझे गाड़ी का नंबर वगेरा भी दिखाई दे रहा है मॉर्निंग की है।

मैं इस पिक्चर में देख सकती हूं मुझे नाइट के समय लग रही है क्योंकि सारे तरफ ओ लाइट वगैरा जल रहा है।

बट यहाँ पे जो लाइटिंग वगैरा है ये मुझे बहोत अच्छी लग रही है यहाँ पेट्रोल पंप कि मुझे बहोत ही अच्छी लगी है यहाँ की लाइटिंग वगैरा यहाँ की प्लेस --

क्योंकि मैंने इसे पहली बार देखा है तो मैं शोर हो के नहीं बता सकती।

मैं जिस तरह इस चित्र में देख सकती हूं मुझे ऐसा लगता है कोई एनुअल फंक्शन वगैरा है।

क्योंकि ऐसी जो मतलब डांस होती है एनुअल फंक्शन में ही होती है।

यहाॅं पे जैसे मुझे इस फोटो में दिखाई दी जा रही है रायपुर की हॉस्पिटल मुझे दिखाई दी जा रही है।

मैं जैसे इस पिक्चर में देख पा रही हूं यहां बहोत सारी लेडिस है जोकि शायद पुरुष भी यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सुंदर दिख रहा है ये होटल है ये लाल और हरा है।

दिख रहा है घर दिख रहा है दुकान दिख रहा है साइकिल भी दिख रहा है गाड़ी दिख रहा है।